पेपर पेन दिख रहे हैं और साइड में कुछ बॉक्स रखी हुए हैं सामने एक कुर्सी--

रखी है और साइड में एक टी_वी लगा हुआ है पीछे एक कांच का गेट है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक आदमी दिख रहा है जो पीले कलर की--

पहने हुए हैं और सामने एक टेबल है जिस पर एक गंध गंद रखा हुआ है और साइड में--

पोस्टर लगे हुए हैं एक बड़ा पोस्टर है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है और नीचे आधार

लड़के और एक लड़की बैठी हुई है टेबल पर एक पेपर --

को रखा है और भी बहुत सारी कॉफी रखी हुई है लड़की कुछ--

यहाँ मैं देख पा रही हूं एक टेबल दिख रही है जो--

एक क्रीम कलर की टेबल दिख रही है जिसके पे भी एक कंप्यूटर रखा हुआ है और जिसके सामने एक आदमी--

बैठा हुआ है पीछे कुछ मशीने दिख रही हैं जिनमें रंगीन ल--

कुछ कीड़े मकोड़े रखे हुए हैं सामने एक महिला बैठी है जो और--

बहुत से काले बक्से रखे हुए हैं सामने बहुत सारी खुर्सी--

है जिन पर लाल कपड़ा डाला हुआ है ऊपर छत सफेद कलर की है और कुछ आदमी--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमें बीच में बहुत सारी लड़कियां--

लगा हुआ है जिसमें टेस्ट राइड अवेलेबल लिखा हुआ है।

कुछ सिंगल डोर और कुछ डबल डोर की फ्रिज दिखाई दे रही है जिनके ऊपर पोस्टर लगे--

गीजर रखे हुए हैं और ऊपर मिक्सी के वो मिक्सी रखी हुई है।

टेबल बनी है जिसपर एक नीला पीला गोल टब रखा हुआ है वॉश बेसन --

बहुत सारे रैक बने हुए हैं जिनमें ऊपर टावल नीचे कुछ क्रीम --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं बहुत सारी बोरी दिख रही हैं जो अलग अलग कलर की हैं कुछ सफेद कुछ पीली--

और नीली दिख रही हैं सामने एक बड़ी तकरी टंगी हुई है जिसमें और पीछे दीवार सफेद--

कलर की है बहुत सारी बोरी रखी हुई है सामने एक चक्की दिख रही है।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

यहां पे मैं देख पा रही हूं एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें--

और कांच बीच में सफेद कांच लगा है और एक ऊपर घड़ी टंगी हुई है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक सोफा दिख रहा है जो काले कलर का है जिस पर एक--

ब्लैक एंड व्हाइट है नीचे बहुत सारी लकड़ी लगी हुई है।

ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है लकड़ी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट और कहीं कहीं नहीं है।

दिख रही है ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है और सामने एक छोटी दीवार है जो रंगीन दिख रही है।

दली हुई है और नीचे हॉल है बहुत सारे खंबे--

बने हुए हैं और ऊपर थोड़ी दीवार है जो लाल--

नदी दिखाई दे रही है जिसका पानी नीला--

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद और नीला--

यहाँ मैं देख पा रही हूं एक मंदिर दिख रहा है जो ऊपर रंगीन लाइटों से--

सजा हुआ है और अंदर एक बड़ी देवी जी की मूर्ति बनी हुई है और --

अंदर भी बहुत सारी लाइट लगी हुई है और बहुत सारे आदमी--

. सामने खड़े हुए हैं गेट के बाहर ऊपर रंगीन झालर--

वाले दिख रही हैं सामने दीवार सफेद कलर की है और ऊपर एक--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक स्टेज बना हुआ है जिसमें पीछे--

लगे हुए हैं सा और एक सोफा रखा हुआ है और दो ऊपर लड़कियां दिख रही हैं नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं जिनमें --

दिख रहा है जिसमें बीच में सफेद पोस्टर लगा है जिसमें नीले कलर से ओम बना हुआ है और नीचे परफेक्ट --

थर्टी टू प पेयर्स लिखा--

इसी मशीन है जो काले कलर की है जिसमें सफेद पंखे गेट लगा हुआ है और साइड में एक--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं हॉल है जिसमें नीचे बहुत सारी महिलाएं--

बैठी हुई हैं कुछ महिलाएं बालों में गजरे लगे हुए हैं सामने एक लड़का--

हरे पेड़े लगे हुए है और सामने सड़क है जिस पर एक कार दिख रही है और बहोत से दूर दूर पेड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं सड़क दिख रही है जिसका कलर काला है और बीच में एक --

और सामने से जा रही हैं एक सफेद एक पीली दिख रही है।

गणतंत्र द्वार लिखा है और दोनों साइड झंडे लगे हुए हैं।

ने कपड़े पहने हैं और हाथों में मोटी मोटी बुक हैं पीछे एक आदमी खड़ा है जो--

और नीला पोस्टर दिख रहा है और दूर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक मंदिर है जिसमें ऊपर नीले कलर की--

ऊपर दीवार सफेद कलर की है और कांच के गेट में स्कूटी दिख रही --

इनके ऊपर ग्रीन चटाई डली है और एक छोटी टेबल है जिसके आमने सामने सफेद कुर्सी रखी हुई है और सामने कुछ खंबे दिख रहे हैं जो ओर--

सामने दीवार है जिस पर कुछ गमले रखे हुए हैं दूर सड़क दिख रही है और बहुत सारे--

महिलाएं और आदमी बैठे हुए हैं और साइड में एक महिला कुर्सी पर बैठी--

कोई है नीचे सफेद कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।

साहपुर कांडी फ्रंट एनसीमेंट मोमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट लिखा हुआ है पीछे बहुत सारे--

पेड़ दिख रहे हैं और एक दीवार है और नीचे कुछ हरी घास लगी हुई है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक टेबल दिख रही है जो ऊपर--

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं एक कार दिख रही है जिसके पीछे एक बड़ी--

कलर नीचे सफेद कलर की है ऊपर पीले कलर के वेरी फो फॉरेक्स --

लगी हुई है और ऊपर नीले और सफेद गुब्बारे दिख रहे हैं।